इस फोटो में मैं देख पा रही हूं यह एक यूनिवर्सिटी दिख रहा है।

यहां पर कई सारे बेड लगे हुए हैं और यहां पर नर्स भी है।

टेलरिंग और क्लोथिंग भी है और रेडीमेड कपड़े भी मिलते है।

इस फोटो में एक नर्सरी गार्डन दिख रहा है।

जो की वहां कई सारे पौधे लगे हुए हैं।

यह एक सिनेमा का फोटो है जो कि लिखा है पी_वी_आर और--

नहीं आ रहा है फिर भी मैं ये वीडियो बना रही--

इस फोटो में मैं देख पा रही हूं यह एक डाक घर है।

और पानी भी बैह रहा है और अच्छा व्यू दिख रहा है।

इस फोटो में मैं देख पा रही हूं यह एक गार्डन का फोटो है।

इस फोटो में मैं देख पा रही हूं यहां पर--